स्तूप हउऐभगवान बुद्ध के स्तूप हउए भगवान बाने भगवान बुध महातमा बुद्ध बाने आ बरका भारी घर बाटे ओइमें इ बनावल बाटे --

एगो आदमी इस्कुटी से बा शर्ट पहिनले बाटे पेंट पहनले --